और यहां का बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है होटल की रेंट बहुत ज्यादा होती है।

यहाँ लगाते है थोड़ी बहोत कसरत करते है।

सामान पेट पे लटका है वे चल रहे है ये बहोत में--

हेलो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये वनप्लस नाम की जो फोन है उसका ये सडविस सेंटर है और इस सडविस सेंटर पे अलग अलग तरह के--

यहाँ तरह के मोबाइल है ये मोबाईल कि शॉप है।

विवो का वाई ट्वेंटी विवो वाई फिफ्टीन वाई फिफ्टी ट्वेंटीन थोडा अच्छी अच्छी मोबाइले हैं।

हेलो गाइस तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे एक बाइक की शोरूम है और जहां पे--

और जींस पहना हुआ है और निचे भी जूता पहना हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर एक लोहे का गेट है जो गेट भी बहोत अच्छा है।

एक ऑफिस है और ऑफिस में बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और वहां पर एक आदमी काम करवाने के लिए आया है।

ये देख ने से तो लग रहा है कोई बैंक है जिसमे बोहोत सारे आदमी है बेठे हुए कुर्सी पे --

यहाँ पे तिन चार पिलर खड़े है पिलर के ऊपर छत भी है।

जंगल में अ बहोत सारे जानवरों को देखने के लिए।

चेयर पे जो की चेयर बहुत ही आलिशान है और साथ में इनको कपडे से ढक रखा है और एक आदमी उसकी दाढ़ी बना रहा है ।

और ये लोग यहाँ पर बहोत मस्ती करेंगे और ये लोग ऊपर से देख रहे है।

प्लेट फॉर्म दो आदमी खड़ा है प्लेट फ्रॉम पे एक ब्राउन और एक वाईट कलर कि--

यहां पर तीन कुत्ते सो रहे हैं और यहां पे पंखा स्पीकर डिस्पले --

हेलो गाइस तो यहाँ पर देख सकते है हमारे सामने--

पुलिस चेक करवाते है के हमारे गाड़ी से ज्यादा पोलुशन तो नहीं हो रहा है और ताके उन्हें फ़ाईन न लगे किउके फ़ाईन बहत ज्यादा लग जाता है।

हेलो गाइस तो यहाँ पे आप लोग देख सकते है कि हमारे सामने एक ये बहोत बड़ा सा मोल है।

और सेंट परफ्यूम अत्यधिक जोई जरूरत के सामाने होती--

इस हेलमेट को खरीदे और अपनी सुरक्षा खुद करे।

और यहां पे फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं यहां पे कुछ सीढ़ी टाइप बना के उन्हें सजा के रखा गया है।

जो की एक पार्क का है यहाँ पर बोहोत सारे जुले है यहाँ बच्चे आते है और जुला जुलते है।

यहाँ पर लोग आते है जाते है पब्लिक के साथ हरकते करते है यहाँ पे बहोत लोग आते है।

तुके लोगो हमारे सामने यहाँ आयगी--

लेंगी स्कूल नाम कि एक स्कूल आइ है।

लोग यहाँ पर अपना देख सकते है की हमारा सामने एक लड़का और लड़की खड़ा है।

दोनों हालांकि बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनकी शादी हो रही है ये लोग काफी--

फोटो के पीछे में बोहोत अच्छी सजावट है सजावट बोहोत सारे फूल लगे हुए है जो की दिखने में बोहोत ही अच्छे लग रहे है।

खड़े है और घर के ऊपर दो पंखा लग है और साइड से बोहोत तेज आरहा है जिस कारन सो सेड कुछ दिख नही रह है सही से वाइट पूरा दिख रहा है ।

दो आदमी दो शयद कुछ लिख रहा है और ये जिस चेयर पे बैठे है वो चेयर बोहोत आराम दायक होता है।

बड़ा ही एतिहासिक बिल्डिंग है और यहाँ पर बोहोत सारे लोग आये हुए है फोटो खीचवा रहे है।

हेलो गाइस जैसा की आप यहां पर देख सकते है ये पार्क है पार्क में निकलने के लिए अलग सी जगह बनाई गयी है।

और वहा पे सिक्यूरिटी पोस्ट भी है जहाँ पे उसमे पता है।

कोनसे पहाड़ में बहोत सारे पर्स लगे हुए है जोकि बच्चो को--

उनके घर पहुचाते है और घर से वापस लेकर आते है।

यहाँ पे बहत तरह के दवाइया मिलती है और बड़े सस्ते है दामों में एन दवाइया मिलती है यहाँ पे।

हेलो गाइस ये सब यहाँ आपको देख सकते है यहाँ पे--

पूरी बिल्डिंग लग रही है की स्कूल की है और यहाँ पर दो कार भी खड़ी है एक स्कूल --

खड़े है उस साइड ग्राउंड में उस साइड ग्राउंड भी है जहा बच्चे आके खेलते है बस की कलर येलो है कार की कलर --